ये किताबे और बहुत ही अच्छी-अच्छी किताबे लग रही हैं देखने में।

और जा कर के इधर एक ब्लैक कलर की ओटो लगी हुई है उधर शायद एक्सिस बैंक है और ये बैंक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा लग रहा है कितना बढ़ियां बहुत सारे लोग भी जमें हैं पैसे।

और इधर भी छोटे-छोटे पौधे और बड़े-बड़े पेड़ पेड़ भी नजर आ रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है बीच में येलो कलर की मूर्ति और दोनों तरफ रंगीन मूर्ति --

यह स्टेज बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा है दोनों लड़कियाँ भी बहुत ही प्यारी और बहुत हीं खूबसूरत लग रही है देखने में।

ये किताब की दुकान है और ये भी बहुत बड़ी दुकान है और इसमें भी बहुत सारी किताबें और यहां पे बहुत सारे रंग-बिरंगे पेन व्हाइटनर अ जो न कलरफुल रंगीन वगैरा बहुत कुछ है और --

देख रहे की आप लोगों ये भी किताब हे जो की ये भी बहोत ही बड़ी दुकान लग रही हे और ऊपर ग्रीन कलर की शटर लगी हुई हे और इधर एक व्हाइट कलर की बाइक भी लगी हुई हे।